यह एक शोरूम है जो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पर एक गाड़ी है जो लोग कुछ तो --

कलर होवा हुआ है एक आदमी इसके अंदर जा रहा है।

और यहां पर कुछ छोटी साइकिल भी हमें नजर आ रही--